सायद यहा पर पार्टी भी मनाई जाती है।

के ऊपर जस्ट लाइट लगी हुई है जश्शे माता का फेस क्लियर नहीं दिख रहा है।

जिस पर व्यक्ति अ बैठकर बारबर का काम करवाता है।

ऐसे लग रहा है जसे जम्मू कश्मीर का सीन हो।

हाई प्रेशर द्वारा ताकि गाड़ियों की चमक बनी रहे।

सामने डिस्प्ले पर बहुत ही अच्छी --

ये जो व्यक्ति एक लेडीज को --

यहीं एक वर्कशॉप है जिस पर ईयर भरने के लिए एक मशीन राखी हुई है।

इसके जस्ट बगल से ही।

हाथ पे अगरबत्ती लिवे हुए हैं और जस्ट पीछे ही बहुत सारी फीमेल खड़ी हुई हैं।

सामने एक व्यक्ति है जो कुछ नृत्य कर रहा है।

यह फोटो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वाकिंग करते समय या रनिंग कर रहे हो।

कुछ व्यक्ति ऐसे रहे हैं जैसे घास काट रहे हो या कोई फसल लगी हुई है। .

ऐसे लग रहा है जैसे शिव मंदिर हो।

जिस पर तीन पाए लगे हुए हैं।